एक मकान टीन शेड बना हुआ दिख रहा है इसके अंदर--

महीन महीन घासे भी निकली हैं।

अब बड़ी बड़ी लाइटे भी खूब लगी हुई हैं।

इसके अंदर काउंटर रखे हुए हैं।

जो दो फव्वारे सामने रखे हुए हैं पानी फेंकने वाले।

शीशा भी लगा हुआ है पंखे हैं इसके अंदर।

ये एक पार्क है बहोत बड़ी सी।

ये घंटियां भी बहोत सारी लगी हुई है।

और कारें भी बहुत सारी हैं।

और बलब भी लगे हैं।

सामने गोल्डन कलर का कुछ बना है।

एक कार खड़ी है यहां पे उसी के जस्ट पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है।

उसके अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है।

सामने से सी ढ़ी भी उतर रही है पूरे में।

उसी के जस्ट नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है नीले कलर का।

उसके अंदर गिरीले भी लगी हुई हैं एक गेट है बड़ा सा।

और चिप्स चॉकलेट बिस्कुट नमकीन भी इसके अंदर पैकेट बोहोत सारे हैं।

ढोलक रखी हुई एक जमीन में और एक सामने ऊपर वॉल --

दो गिटार है जो रखे हुए हैं।

पानी मट्टी मिला हुआ आ रहा है। इसके अंदर--

लोहे की छत भी बनी हुई है जो ग्रिल लगी है पूरे में।

उसके अंदर लाइटें भी बहोत सारी लगी हुई हैं।

उसके अंदर हरी कलर की कालीन बिछी हुई है।

सामने वॉल बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

कार भी है यहां पे एक वाइट एक ब्लैक कलर की।

ग्रिलें कलरफुल लगी हुई हैं इसके अंदर लंबी सी।

एक आदमी लेग प्रेस लगा रहा है।

इसके अंदर प्लेटें भी रखी हुई हैं।

और गर्दन पर इसके रसिया भी लड़की हैं एक मुंह पे रस्सी बंधी हुई है गाय के।

एक और व्हाइट कलर की एक पीछे गाय भी एक खड़ी है।

और शीशे के काउंटर भी बहुत सारे लगे हुए हैं।

व्हाइट कलर का पेंड हुआ है रेड कलर का भी पेंड हुआ है।